ऑडिटोरियम में लाल रंग की कुर्सियों की पंक्तियां हैं और उन पर लोग बैठे हुए हैं।

पैदल चलने वाले लोग भी सड़क के किनारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान का नाम एक बड़े नीले साइन बोर्ड पर सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है।

समूह में ज्यादातर महिलाएं हैं।

यह तस्वीर एक वाटर पार्क का दृश्य दिखाती है।

इसमें रोज मारया की चीज रखी हुई है।

कुर्सियां लाल रंग की हैं और यह प्लास्टिक की रैपिंग से ढकी हुई हैं।

यह तस्वीर एक इमारत के सामने का सड़क का दृश्य दिखाती है।

यह तस्वीर ग्रीनहाउस या नर्सरी में लगे कैक्टस और रसीले पौधों की भरमार दिखती है।

में कोयला या इसी तरह की काली सामग्री को संभालते हुए उसे सफेद बैग में भरते हुए लग रहे हैं पृष्ठभूमि में एक बड़ा ट्रक है।

चट्टानों के बीच की जगह बहुत तंग है और आदमी मुश्किल से ही उसमें फिट हो पा रहे हैं।

अग्र भूमि में कुछ पुरी या आंशिक रूप से पूरी हुई एक मंजिला इमारते हैं।

मस्जिद में फर्श पर लाल रंग की कालीन बिछी हुई है।

यह तस्वीर एक खुले क्षेत्र का दृश्य दिखाती है।

ज्यादातर गमले खाली है या उनमें सूखी हुई पत्तियों और थोड़ी मिट्टी दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर रात के समय एक रेस्ट्रा कैफे का बाहरी दृश्य दिखाती है।

रेस्टोरेंट के बाहर कुछ कारें और दो पहिया वाहन खड़े हैं।

बैनर में स्कूल के बारे में जानकारी भी दी गई है जैसे कि नर्सरी से एट कक्षा तक की शिक्षा प्रदान कर--

सभी नंगे पैर हैं और उनके हाथ एक समान ताल में ऊपर उठे हुए हैं।

जलाशय के दूसरी तरफ चट्टानों की एक दीवार है जिस पर से एक छोटा झरना बह रहा है।

के पास एक तोप भी दिख रही है दीवार पर अंतरिक्ष और ग्रहों के चित्र बने हुए है।

दुकान का नाम पवन फ्रूट शॉप है जो एक पीले रंग के साइन बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा हुआ है।

यह डेस्क या स्टडी टेबल है।

इमारत में लाल गुंबद और जटिल वास्तु कला है जिससे यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत लगती है।